यहा बाल बन रहल हई बालक के और ये बच्चा के बाल बनाते हुए तस्वीर बालक भी खुश --

यहा पे सैलून के बाहर सब फोटो खीचा रहल हई ।

सब खालि सैलून के तस्वीर हई यहां भी स्पा एंड सैलून भाई साइब सैलून के बाहर तस्वीर खीचा रहल हई ।

इसमें अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है अलग-अलग तरह के पियानो --

एक साइड से फोटो लेल गेल है रत के तस्वीर बुझाई छै।

कुर्सी लगा हुआ है मंडप सजा हुआ है सादी होने को लिए तैयार दूल्हा दुल्हन बैठेंगे यहाँ--

--और ई फोटो कुनू ग्राउन्ड के ले गेल है जिनमे मतलब बहुत बड़ा ग्राउन्ड है कुछ लोग सब शायद कुछ खेल भी रहल है कुछ बैठल है।

और यहा पे जे.सी.भी. गड्ढा खोद रहा है गड्ढे में थोड़ा लाल मिट्टी निकल रहा है अंदर से कुछ लोग गड्ढे में झाक भी रहे है।